ये मोल के अंदर बहुत बढ़िया है और इसमें हर एक कपड़ा मिलता है ठंडा गरम हर एक सीजन का कपड़ा इसमें मिलता है और ये एक बहुत बढ़िया मोल है इसमें बहुत जगह से आदमी आते हैं खरीदने के लिए कपड़ा वगैरा और ढेर सारे चीज इसमें मिलते हैं।

तरह-तरह के कटिंग कटा सकते हैं। ढेर सारे इसमें कटिंग है। अपने मन चाहे कटिंग कटा सकते हैं। उसके बाद ढाढ़ी वगैरह भी सेट करवा सकते हैं कट वगैरह लगवा सकते हैं। बहुत बढ़िया सैलून है। इसमें बहुत सारे आदमी आते हैं।

ये ढेर सारा खाना खाती है और ढेर सारा दूध देता है।

एगो बहुत बढ़िया फल दुकान है इसमें ढेर सारे फल मिलते हैं जैसे सेब हो गया केला हो गया संतरा हो गया आम हो गया पानी एप्पल हो गया गाजर हो गया पपीता हो गया और ढेर सारे फल मिलते हैं इस दुकान में ।